यह एक रेलवे स्टेशन है । उस पर ऑटो खड़े हुए हैं ऑटो हैं ई रिक्शा हैं सामने एक व्यक्ति खडा़ है।

यह एक पार्लर है। पार्लर में कुछ लोग बैठे हैं उसमें एक ग-बच्ची भी बैठी है दो लोग बाल कटा रहे हैं।

उसमे एक लड़का खड़ा हुआ है। लड़के ने सफेद शर्ट और जीन्स पहेन रखी है।